और यहाँ पे हरा-भरा दिखाई दे रहा है और टाइल्स पत्थर भी लगा हुआ है और अति सुंदर लग रहा --

और ये गेट भी खुला है और देख के बहुत सुन्दर लग रहा है और बहुत मस्त नजारा है।

और ये लाल ड्रेस पहना हुआ है टोपी पहना हुआ है अ देख के बहुत बढ़ियां --

और ये अति सुंदर ही दिखाई दे रहा --

और यहाँ पे बहुत अच्छा से पार्किंग बनी हुई है और बहुत मस्त इमेज दिखाई दे रही है ।

और यहाँ पे एक महिलाये अंदर घुसी हुई है ।

और ये बलिया पहना हुआ है।

उ लाइट भी जल रहा है ऊपर में।

फीलिंग तो आ रहा है इसको ठीक किया जा रहा है।

और यहाँ पे आदमी भी दिखाई दे रहा है और बहुत मस्त इमेज लग रहा है देखने में --

और यहाँ आ के बहुत सुन्दर लग रहा है गाड़ी भी है।

और अति सुन्दर ही दिखता हुआ नज़ारा --

और यहाँ पे हरी-भरी वृक्ष भी है और देखने में बहुत सुन्दर लग रहा है।